बड़ा सा मैदान है हरे रंग की घास है पूरी घांस है अगल-बगल बहुत सारी दीवाले खड़ी की गई है जो सफेद रंग की है।

सफेद रंग का आसमान है पेड़ पौधे है हरी पत्तियां हैं नीचे साइड पे एक गार्डन है जो हरे रंग की-- हरी घांस है कुछ कुछ कुचडे पड़े हुए हैं और सफेद सफेद और नीले आसमान--

काफी चौड़ी नदी है जो काफी पानी भरा हुआ है ऊपर के साइड पे ये गोल्डन रंग के आसमान है सफ़ेद रंग की आसमान-- अगल बगल पेड़ पौधे हरी पत्ति है।

बगल में पेड़ है ऊपर पथ्थर के ऊपर एक पेड़ है जो सुखी हुईं है सफेद नीले रंग की आसमान है बगल में पेड है हरी पत्ती है।

एक बड़ा सा बिल्डिग है जो सफेद रंग की है बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जोकि स्कुल बॉय मॉडल के जो कपडे पहने हुए है और स्वेटर पहने हुए कुछ लड़की जो पीछे से देख रहे--

छोटा सा घर है जो सफेद रंग की हैखिड़कीया लगाई गई है जिसपे काच लगी हुई है रॉड लगी हुई है सामने एक बड़ा सा गेट हैबहार एक गाड़ी खड़ी हैअंदर की तरफ भी खड़ी है।